यह एक बोहोत ही सुंदर मैरिज हॉल है।

यह एक रूम है इस रुम में बहुत सी आकृति रखी हुई है।

खंबा दिख रहा है। बिजली के तार दिख रहे हैं।

हाथ दिख रही है आदमी दिख रहे हैं।

कुछ आइडेंटी कार्ड टंगे हुए हैं तिरंगे दिख रहे हैं।

दुकान दिख रही है खाने का समान दिख रहा है दुकान में।

इसमें दिख रहे हैं ग्रिल दिख रहे हैं।

थाली दिख रही है दीपक दिख रहा है।

जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसमें मुझे लाइट दिखाई दे रही है।

यह एक पेट्रोल पंप है।